और स्टेज के पीछे एक काले कलर का पर्दा लगाया गया है और दोनों--

यहां पे एक व्हाइट कलर का छोटा सा घर दिख रहा है।

पे एक बहोत ही बड़ी गोल सी घड़ी लगाई गई है और यहां पे एक जंगला भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे पत्थर के छोटे छोटे ईंटे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें स्क्वायर शेप में काटा गया है।

और फूल के पत्ते भी हरे दिखाई दे रहे हैं।